यह चित्र में दो बच्चे बैठे हैं। जहाँ पर कैंडल जल रहे है। कैंडल के कलर लाल कलर हैं पिले कलर हैं। कुछ--

चित्र में अ स्लाइडर जैसा हुआ। रास्ता गया हुआ है। जिससे अगल बगल में पहाड़े है। और जाले है। पहाड़ के अंदर में ---

लोखंड जैसा दिख रहा है। उजाला दिख रहा है। मट्टी है। पत्थर है। नीचे एक रास्ता गया हुआ है।

यह चित्र में पहाड़ हैं पहाड़ के ऊपर व्यक्ति हैं बैठने वाला जगह हैं प्लेस है और--